एक ग्राउंड में अ और यहाँ पे अ सामान रखे हुए रखें मच्छी रखें छोटे-छोटे और बड़े-बड़े--

सामने बहुत बड़ा ग्राउंड दिख रहा है। रेलिंग दिख रही है गेट दिख रहा है ब्लैक कलर का--

ऊपर बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है और द्वार दिख रहा है पर्दे दिख रहे हैं ब्लू कलर के और वाइट कलर के--

और टेबल दिख रही है तीन और फर्श दिख रही हैं जिसमें व्हाइट कलर और ग्रे कलर का फर्श हैं दीवार दिख रही है जिसमें अ--

और बहुत सारे यहाँ पर कप रखी हुई है सफेद कलर के बहुत सारी लाइटे जल रही है। और कैमरा लगा हुआ है और--

सामने हमको बहुत बड़ी नदी दिख रही है जिसमे बहुत सारे औरते--

और आलमारी रखा हुआ है आलमारी पे बहोत सारे सामान रखी हुई है और पोस्टर टंगा हुआ है मेहरून कलर का--

सामने नींबू दिख रही है अ चुकंदर दिख रहा है धनिया पत्ती दिख रही हैं टमाटर दिख रही गाजर दिख रही है।

चार ठो खंबे दिख रहे हैं सामने कार खड़ी हुई दिख रही है कार के शीशे दिख रहे हैं।

एक बिल्डिंग दिख रही हैं जिसमें अ प्लास्टर नहीं किया हुआ हैं।

ग्राउंड में हल्के-हल्के घास उगे हुए हैं और गोल्डन कलर का भी दिख रहा--

सामने हमको बहोत सारे कंघी टंगे हुए दिख रहै है बिंदी दिख रही है।

सामने देख रहा है एक छोटी सी बच्ची खड़ी हुई बनियान पहने।

एक हॉल दिख रहा है हॉल पे अ टेबल रखा हुआ है टेबल पे गमला रखा हुआ है अ रेड कलर का--

सामने एक लड़का दिख रहा है टी-शर्ट पहना हुआ है उसके आँख दिख रहे है नाक दिख रहे हैं ।

हॉट दिख रहा है और कान दिख रहा है सामने दीवार दिख रही ऑरेंज कलर का